बाहर पे पांच लोग कुछ बातें कर रहे हैं।

कुछ पीली व सिल्वर कलर की हैं।

इस फोटो में सामने दो बाइक खड़ी हुई है।

बाइक के पीछे पहाड़ है।

एक सूखा सा पेड़ है पतला सा--

ग्राहक मोल भाव कर रहे हैं।

पेड़ के बीच में से दो बिजली की तारे गुजर रही है।

इस फोटो में एक इनडोर स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

वहां पे काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं।

एक नॉर्मल वाला ट्रक है।

और ट्रैक्टर है एक जे_सी_बी है।

और राइट साइड में काफी सारे कपड़े टंगे हुए है।

ये इमेज में काफी सारे पेड़ और कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर गाड़ी का बोनट खुला हुआ है।

पानी का रंग भूरे रंग का है।

नदी का बहाव काफी कम है।

जहां फोटो में एक मैकेनिक गाड़ी सही कर रहा है।

गाड़ी में पेट्रोल की डिक्की खुली हुई है।

यो फोटो एक पब्लिक स्पॉट पे ली गई है।

समान उतारा व चढ़ाया जा रहा है।

काफी सारे पौधे लटकाए व रखे गए हैं इस पिक्चर में।